की लगि हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर नारियल के बड़े- बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है नारियल दिखाई दे रहे है लगि हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर नारियल के ऊंचे -ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे है।

पेड़ भी लगे हुए आस- पास मकान भी दिखाए हुए यहाँ मकान भी बने हुए दिखाई दे रही यहाँ पर मकान पर लाइट लगी दिखाई दे रही है यहाँ पर मकान दिखाई दे रहा है।